रेड कलर के दिल है और इसके ऊपर रेड कलर के दिल लगे हुए है और इसके साइड में एक नजर आ रही है दूसरी तरफ भी एक गाड़ी नजर आ रही है एक रोड --